दुकान है जहां पर केले रखे हुए हैं पपीता रखे हुए हैं सेब है और अंगूर है किसमिस हैं ।

ये एक चर्च है वाइट कलर का आसमानी कलर का फ्रोज़ी कलर का ऊपर चर्च पे लगा हुआ है।